और औरत लोग ये ज्यादा पुजा करती है इसमें हम लोग सभी खुश रहते है और कोशी और डाली दोनों भी भराता है सुबह भोर में हम लोग कोशी और डाली को लेकर जाते हैं।

यहाँ पे लोग की किराना का भी समान लेने जाते है जैसे में झाड़ू वैगरह सेम्पल वैगरह और पेप्सी भी यहाँ मिलती है ये दुकान देखने में बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे अंकल कुछ सामान भी लिए --

कृष्णा का मूर्ति है राधे कृष्ण जी बचपन में मक्कन भी बहुत ज्यादा खाया करते हैं। इनका डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ है और फूल भी बहुत अच्छे अच्छे से सजे हुए हैं |

एक आदमी है ये कहीं आगे इंच टेप से ये पत्थर का नपाई कर रहा है और ये अगल-बगल में हरे-भरे भी कुछ दिखाई दे रहे है और पत्थर भी कुछ टूटल है।

और पीछे शंकर जी का फोटो --

बगुला है यहाँ का पानी गन्दा है और यहाँ मछली ये --